लोग आते है । यहाँ पर फूलो की माला मिलती है । फूल मिलते है । फूल हम लोग खरीदते है । सजावट करते है । पूजा करते है ।

काम कर रहे हैं यहाँ पर बालू गिट्टी छड़ सीमेंट गिरी हुई है और लेबर मिस्त्री काम में लगे --

यह एक नदी किनारे है यहाँ पे एक पुल बनी हुई है बहुत सारे आदमी यहाँ पे आए हैं काम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगो की भीड़ लगी हुए है यह जगह बहुत ही सुन्दर दिख रहा है बहुत सारे आदमी आए हुए हैं काफी लोगो की भीड़ लगी हुई है।